इस तस्वीर में मुझे सामने की तरफ दीवार पे कुछ नाम लिखे हुए हैं हैप्पी बर्थडे --

सामने इस तरह की कुछ सामान दिखाई दे रहे हैं और देसी घी की डिब्बियां दिखाई दे रही है।

जिसके अंदर कुछ खाना दिखाई दे रहा है।

और लॉक की बने हुई चैन भी दिखाई दे रही है और कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है और कुछ टेबले दिखाई दे रही है।

कुछ आलमारियों के अंदर मूर्ति जैसे दिखाई दे रही है और कुछ छोटे गमले दिखाई दे रहे --

इसके पास में कुछ लोहे के बने पोल दिखाई दे रहे हैं और कुछ पास में मकान भी दिखाई दे रहे हैं।

और पेड़ दिखाई दे रहे हैं ट्रेन की बनी हुई पटरियां दिखाई दे रही है और इसमें छोटे छोटे कोई कंकर दिखाई दे रहे हैं।

तितली की बनी हुई कुछ टोकरी जैसे भी दिखाई दे रही है पास मे कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है कुर्सियां दिखाई दे रही है।

कॉल दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ लाइटें भी दिखाई दे रही है और कुछ नीम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे सामने की तरफ कुछ बच्चों के खिलौने दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ी --

इसके बाहर की तरफ मुझे एक शीशे का गेट दिखाई दे रहा है और अंदर मुझे एक कुर्सी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे सामने की तरफ है कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

और पास में कुछ दीवारों पे गुब्बारे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और लाइटें दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ सब्जियां दिखाई दे रही हैं और कुछ बड़ी--

इस तस्वीर मे मुझे एक सामने की तरफ कोई दुकान दिखाई दे रही है जिसमें कुछ लाइटें भी दिखाई दे रही है।